यहां पे बहुत सारे बड़े बड़े गांच भी है और एक बहुत बड़ा लाइट पोस्ट है।

और बहोत सारे चार्ट पेपर्स है और फेविकोल है और कैंची है।

पीछे रेड कलर का बाइक है और आसपास बहुत सारे बड़े बड़े पेड़ है।

फेविकोल है और यहां पे एक सिस्टर रुकी हुई हैं।

कपड़े प्रेस होते हैं और यहां पे एक अंकल कपड़े प्रेस कर रहा है।